यहाँ पर एक रोड के साईड में फूल के दुकान बाटे जहाँ पर एक दुकानदार बैठ के बेचता।

इ जगह पर एगो बस स्टेंड बाटे जहॉ पर बेठे वाला बहुत सारा कुर्सी बनावल बा।